इसपे कुछ बच्चे फिसल रहे--

सामने यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा झरना दिख रहे हैं।

और अअअ कुछ बसे दिख रहे सामने की तरफ वाइट कलर में --

लाइटे दिख रही हैं ।

जालियाँ दिख रही है अंदर की तरफ --

खिड़कियां दिख रही है लाइटे दिख रही हैं पेड़--

सड़क दिख रही है सामने की तरफ --

यहाँ पर एक सामने की तरफ --

सामने एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है ग्राउंड --